यहा पर एक बड़ा-सा खेत दिख रहा है जहा पे बहुत सारे हरे-हरे घास लगे हुए है।

और साइड मे एक आदमी बाइक से जाते हुए दिख रहा है और--

यहा पर एक बड़ा-सा हाल जैसा दिख रहा है जहा पे सामने मे एक बड़ा-सा स्टेज बना है वहा पे कुछ आदमी फोटो खिचाते दिख रहे है।

यहा पर एक बड़ा-सा मंदिर दीख रहा है यहा पर बहुत सारे द्वार बने हुए है वहा पे बहुत सारी लाइटे लगी दिख रही है कुछ येल्लो कलर की लाइट लगी हुई है और ब्लू कलर की--